यहाँ पर ये बनाया गया है जो कि टैंट लाया जाता है किराये पर और उससे बनाई जाती हैं यहाँ चाँदनी --

और इसके बाहर देखो तो एक नेचुरल स्विमिंग पुल है जोकि बारिश द्वारा भरा गया है।

सबसे अधिक लोग पाए जाते हैं इन जगहो पर कम लोगों की --

यह एक होटल फ्लैक्सी टॉवर है जहाँ पर कि --

और एक प्रकार से पथरीला एरिया है। जिस पर पत्थर --

को बहाते हैं और यह --

अप एसटीएसडी ग्रुप आफ कॉलेज है --

सिक्स एचटीसी क्वालिटी अवैलिटी ओप्पो --